यहां एक बहोत सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे हरी-हरी घांस दिखाई दे रही है। पर्पल रंग के कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ स्टेज पर कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हे लड़कियों ने हरे औ --

सड़क का रंग भूरा नजर आ रहा है। आस पास पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ों का रंग हरा नजर आ रहा है।

यहाँ एक पानी का तालाब नजर आ रहा है। जहां पूल पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने कथई रंग की --

तीन मूर्तियां बनी हुई है। मूर्तियों का रंग सफेद और गोल्डन नजर आ रहा है।

खेत में हरी-हरी फसल दिखाई दे रही है। फसलों के पीछे खेत के आगे जाके पहाड़ नजर आ रहा है जिनमें मिट्टी नजर आ रही है। मिट्टी का रंग --

यहाँ एक खेत नजर आ रहा है जहां पर सुंदर से फूल नजर आ रहा है। फूलों का रंग सफेद दिखाई दे रहा है। इसमें पौधों का रंग हरा नजर आ रहा है।

यहाँ एक गैलरी नजर आ रही है गैलरी के बाहर एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का रंग सफेद दिखाई --

सफेद दिखाई दे रहा है उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी का रंग सफेद नजर आ रहा है पेड़ दिखाई --

मिट्टी दिखाई दे रही है जो कि काले रंग --

यह एक दुकान नजर आ रही है जोकि किताब की दुकान नजर आ रही है उसमें बलून्स लगे हुए है बलून्स का रंग हरा नारंगी --

दीवारें नजर आ रही है। एक कच्चा स घर दिखाई दे रहा है जिसमें --

मैंदान में पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों का रंग हरा है। आगे दो बाल्टियां रखी हुई हैं। ऊपर आसमान नजर आ रहा है। यहाँ --

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे डमरू और कुछ सजाने के लकड़ी के समान रखे हुए है। अधिकतर --